चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक बड़ु बारिकु मैदान कर दिखेणु सामणी मा जी रोड दिखेणी रोडम एक यूटिलिटी दिखेणी।

ये फर पीलू रंग छो होयुं यख भैर मा जी कुछ सोर ऊर्जा वाली प्लेट कर भी छन लगीं कुर्सी छिन यख फणी पाणी की टंकी छ पिछाड़ी फणा हरयां भर्यां डाला कर भी छन।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक पेट्रोल पंप कर भी छा दिखेण लग्युं।

यख मा जी गेट करा दिखेणु यखम हरयूं भरयूं ढोकरू दिखेण लग्युं पिछाड़ी फणा हरयां भरयां डाला कर भी छन।

यख मा जी कुछ कारें भी छन दिखेण लगीं यखम टावर छ बिजली कु बिजली का तार भी छन यख पणा पिछाड़ी फण हरयां भर्यां पहाड़ छन हरयां भर्यां डाला कर भी छन।

साइड फणा पुस्ता छन दिखेणा यखम बिजली कु टावर छा नदी का बिचम एक पुल छ बण्यू पिछाड़ी फणा कुछ माकन छन हरयां भरयां डाला भी छन।

यख साइड फणि कुछ रेलिंग छन दिखेणी पुस्ता छ दिखेण लग्युं यखम कुछ माकन भी छन यख पिछाड़ी फणा कुछ हरयां भरयां डाला कर भी छा।